यह एक मंच दिखाई दे रही है जिसके नीचे में एक लड़की नीचे झुकी है और डांस करते हुए ने --

और आगे में पाइप सब लगी हुई नज़र आ रही है दुकान के अंदर सामान है।

यह एक सड़क हैं सड़क के अंदर में दो कार जाती हुई नज़र आ रही है और बीच-बीच में कुछ--

और लोहै के खंभे को फाड़े हुए हैं पीछे में एक इल्वेस्टर हैं जो की हरे रंग में दिखाई दे रहै हैं।

इंसान लोग पीछे की ओर खड़े हुए नजर आ रहे है पीछे में पेड़ हैं।

यहाँ एक बुक की दुकान है जो कि बहुत सारे बुक को टेबल के ऊपर में रखें हुए है और कुछ टेबल के ऊपर में--

और उसके किनारे में कुछ लिखा हुआ है निखिल मार्ट पूजा सामग्री उपलब्ध --

उसके पीछे में एक कुर्सी है कुर्सी के ऊपर में एक स्टूल रखे हुए है।